नमस्कार
gchempaint में view print और export structures के tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
view options
zoom factor पेज setup
print प्रीव्यू
document print करना
image को svg और pdf formats में export करना
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ
ubuntu लिनक्स os version 1204
gchempaint version 01210
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको परिचित होना चाहिए
gchempaint chemical structure editor के साथ
यदि नहीं तो सम्बंधित tutorials के लिए हमारी website पर जाएँ
एक नयी gchempaint application खोलने के लिए
dash home पर click करें प्रदर्शित search bar में type करें gchempaint
gchempaint icon पर click करें
सबसे पहले मौजूदा file खोलें
toolbar से open a file icon पर click करें
files और folders वाली window खुलती है
सूची से pentaneethane named file select करें
open button पर click करें
अब सबसे पहले view options के बारे में सीखें
view menu पर जाएँ
view menu में दो options हैं full screen और zoom
zoom option select करें
zoom factors की सूची के साथ सबमेन्यू खुलता है
सूची में नीचे जाएँ और zoom to % select करें
zoom factor % के साथ dialog box खुलता है
default zoom factor % value प्रदर्शित है
यहाँ हम zoom factor को आवशयकता के अनुसार घटा और बड़ा सकते हैं
अप या down arrow त्रिभुज पर click करें और zooming को देखें
apply पर click करें और ok पर click करें
प्रयुक्त zoom factor के साथ structure प्रदर्शित होता है
आगे देखें कि पेज का setup कैसे करें
file menu पर जाएँ page setup पर जाकर इस पर click करें
पेज setup window खुलती है
इस window पर दो tabs हैंपेज और scale
पेज टैब क्षेत्र रखता है जैसे paper center on पेज और orientation
paper क्षेत्र में हम default paper size set कर सकते हैं
अब change paper type button पर click करें
पेज setup dialog box खुलता है
यहाँ तीन options हैंformat for paper size और orientation
format for क्षेत्र में अपना default printer select करें
मैं अपना default printer select करुँगी
भिन्न paper size के साथ paper size क्षेत्र drop down सूची रखता है
मैं a4 select करुँगी
इस क्षेत्र के नीचे a4 size की डायमेंशन प्रदर्शित हैं
ध्यान दें कि प्रत्येक selected paper size के लिए paper size डायमेंशन्स प्रदर्शित हैं
orientation क्षेत्र में हमारे पास 4 radio buttons हैं
portrait portrait landscape landscape
reverse portrait reverse portrait और reverse landscape reverse landscape
default से portrait selected है
इसको ऐसा ही छोड़ दें और apply पर click करें
आगे हमारे पास margin sizes हैं
top margin left margin right margin और bottom margin
यहाँ हम आवश्यकता के अनुसार margins रख सकते हैं
अगला क्षेत्र unit है
unit क्षेत्र को inches millimetres और points में set कर सकते हैं
ध्यान दें कि जब हम unit बदलते हैं तो margin sizes अपने आप ही unit को suit करते हुए बदल जाता है
अब center on page के बारे में सीखते हैं
यहाँ हमारे पास दो check boxes हैं हॉरिज़ोंटली horizontally और vertically vertically
हॉरिज़ोंटली check box पर click करें
हम preview button पर क्लिक करके अपने structure का प्रीव्यू देख सकते हैं
यहाँ हम प्रीव्यू देख सकते हैं
प्रीव्यू window को close करें
orientation क्षेत्र में हमारे पास निम्न के लिए radio buttons हैं
portrait landscape
reverse portrait और reverse landscape
default से portrait selected है
अब landscape radio button पर click करें
और फिर प्रीव्यू button पर click करें
यहाँ हम landscape orientation का प्रीव्यू देख सकते हैं
आप अपने अन्य orientation options जाँच सकते हैं
अगर आप print button पर click करते हैं तो file कुछ बदलाव के साथ print होगी
प्रिंट करने से पहले आप अपने structure को आवश्यकतानुसार scale कर सकते हैं
इसके लिए आप scale टैब में अनेक options उपयोग कर सकते हैं
आप अपनी scale टैब को जाँचें
अब पेज setup window को बंद करने के लिए close button पर click करें
आगे सीखे कि image को export कैसे करें
file menu पर जाएँ save as image select करें
save as image dialog box खुलता है
file type क्षेत्र के पास image options की सूची है
आप image को svg eps pdf png jpeg और कुछ अन्य में export कर सकते हैं
svg image select करें
file का name pentaneethane enter करें
सेव button पर click करें
यहाँ हम देख सकते हैं कि file svg image की तरह सेव हुई है
आगे image को pdf document की तरह export करते हैं
file menu पर जाएँ save as image select करें
save as image dialog box खुलता है
file type से pdf document select करें
file का name pentaneethane enter करें
सेव button पर click करें
यहाँ हम देख सकते हैं कि file pdf document की तरह सेव हुई है
इसके साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं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
view options
zoom factor पेज setup
print प्रीव्यू
document print करना और
image export करना
एक नियत कार्य की तरह structures को a5 a5 और jb5 formats में print करें
image को eps और png formats में export करें
इस url पर उपलब्ध video देखें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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं